इसमें बहोत बड़े लंबे-लंबे टीन डले हुए है। दीवालें भी बोहत लंबी दिख रही हैं और साइड पीछे बहोत काला काला कुछ --

जोधपुर की शिक्षका प्राथमिक शिक्षा कि टी महिलाए मम्म महिलाए है अम्म यह सफेद कलर की यूनिफार्म पहने खड़े हुये है यह टीचर है यह चार जने हैं|

स्कूल के बच्चे हैं बहोत बड़ा हॉल है | हॉल सफ़ेद कलर का है | टीचर बच्चो को क ड्राइंग बनाना सीख सीखा रही है | प्रॉजेक्ट कार्य चल रहा है | यहां पर यहां पर बहोत से बच्चे अ का --

यह एक लड़को का प्रॉजेक्ट कार्य का चल रहा है सर और मेम भी यहां पर मास्क लगाए हुए बच्चो की हेल्प कर रहीं हैं | बच्चे--

यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है। टीचर बच्चों को कागज मे चित्रकारी कागज मे कटिंग सीखा रही हैं और बहुत से बच्चे यहाँं पर चार्ट में कटिंग करना सीख रहे हैं।

पर प्रॉजेक्ट कार्य चल रहा हैं बच्चे यहां पर कागज कटिंग करके यहां पर बहोत सुंदर डिजाइन निकाल रहे हैं। यहां कुछ बच्चे येलो कलर के कुछ बच्चे--

यह एक स्कूल हैस्कूल में क्रिसमस डे का प्रोग्राम चल रहा है सेंटा ने लाल कलर के कपडे पहने हुए हैं यहां पे बैलून का--